यहाँ जिसे जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है। उसमें मैच के टी.वी लगे मैच के लिए टी.वी एक लगा हुआ है बड़ा सा जिसके पास इसे चारों ओर व्यक्ति बैठे हुए हैं जो अ- अत्यधिक ध्यान के साथ इस मैच को देख रहे हैं तथा वहाँ पे ऊपर की ओर एक फोकस लाइट लगा हुआ है जिससे पूरा मैदान प्रकाशित हो रहा।

दृश्य मंदिर के अंदर का है जेव जो अत्यधिक विशाल मंदिर है और यहां केअंह जाने के अंह जाने के रास्ते पे अंह अंह स्टील का........